और शायद पार्किंग है ये और नार्मल सी सड़क बानी हुई--

पॉट रखे हैं बीच में बैठने के लिए सोफा रखा गया है जो बहुत प्यारा लग रहा है| इसके डेकोरेशन में जो फ्लावर के कलर हुए हैं फ्लावर भी बहुत प्यारे--

ये जो हमें दिखाया जा रहा है इसमें यह एक घर की तरह बना हुआ है शायद होता है।

बहुत सी बाइक वगैरह खड़ी है इसकी और थोड़ा-सा आगे स्कूटी खड़ी हुई है जो अंदर जाते दिख रहे हैं| और ये एक मंज़िले हैं बस ऊपर थोड़ा-सा बना हुआ है इसके आगे।

यह पिक्चर एक स्टेशन की है इस में ट्रेन जाते हुए दिख रही है| ट्रेन बहुत ही कलरफूल है| इसका कलर है रेड और ग्रे और कहीं-कहीं पे येलो कलर का भी यूज़ किया गया है।

देख सकते हैं इसमें वो हैं जो झूले टाईप के हैं रस्सी वाले झूल जो होते हैं वो पड़े हुए हैं| तीन या चार है उधर और भी हैं जो आसपास में--

ये भी किसी कोचिंग क्लासेस की है इसमें आई आई मेडिकल की शायद तैयारी कर कराई जाती है लिखा हुआ है और यह बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर लग रहा है जो की बना हुआ तो बहुत अच्छा है और बड़ा भी है।